टोकरी में समान लिए पूजा करती हुई दिखाई दे रही है।

सामने में एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है ।

नीले रंग का पानी दिखाई दे रहा है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

एक सीलिंग फैन लगा दिखाई दे रहा है।

सामने में पत्थर की गौतम बुद्ध की --

किसी के हाथ में फेविकोल तो किसी के हाथ में कैंची दिखाई दे रही है।

तस्वीर में बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा हैं।